एक पुल है पुल में काफी सारा पानी है नीचे नदी और पेड़ हैं।

ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है खिड़कियां हैं गेट हैं पॉट है पॉट में प्लांट हैं।

बिजली के पाइप हैं काफी सारी लाइट लग रही हैं सामने सूरज दिख रहा है और--

एक ब्लू कलर का बोर्ड लग रहा है जिसमें लिखा है मक्खन दा ढाबा--

और एक पानी में बत्तक है पेड़ हैं।

यह ब्लू ग्रीन रेड कलर का पाइप है।

एक लोहे का गेट है वाइट कलर का मकान है.

एक वाइट कलर की छत है उसमें लाइट लग रही है कुछ जल रही हैं कुछ बंद है और कुछ बैनर्स लगे हुए है।

और तीन जेंट्स दिख रहे है और तार है।

कुछ काम कर रहे हैं और निचे--

अलमारी है मा माया धूप बत्ती है मैगी है।

प्लास्टिक की दुकान है डस्टबीन है ब्रुश है प्लास्टिक के डब्बे हैं पंखे हैं।

एक काउंटर है स्कूटी है कुर्सी है एक जेंट्स कुर्सी पे बैठा है लाइट है ए_सी है पंखा है।

कुर्सियां हैं बड़ी टेबल है पानी की बोतल है और--

अमूल का बोर्ड लग रहा है रेड कलर का--

ओ यू जी के ए आर वाई ए एन ए स्टोर लिखा है।

एक लोहे का गेट है जिस पर लिखा है पेंसी गमले भी उपलब्ध है।

और बड़े-बड़े पेड़ हैं और फोन नंबर लिखा है टू टु नाइन जीरो सेवन एइट वन --

और साइकिल है पंखे हैं लाइट है.

और काफी सारी मोटरसाइकिल है गाड़ी है जेंट्स है.

कपड़े की दुकान है ये जेंट्स और लेडीस बैठे हुए है और कुछ कपड़े पैकेट में है पैकिंग है लाइट लग रही है।

बहुत बड़ी दुकान है बच्चों की गाड़ियां हैं टेडी बेयर है डस्टबीन है टप है.

तीन वाइट कलर की टेबल है मेनू है.

रेलवे स्टेशन है सूरज दिख रहा है पेड़ है एक ट्रेन हैं।

और कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं एक साईकल है और कुरकुरे के पैकेट्स हैं डलिया में.

एक बहुत बड़ा अ सोफा है.

लाइब्रेरी है काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं एक बड़ा टेबल है।

एक बिल्डिंग है जिसमें लिखा है ए_बी_यू_एन_आई_एस_आई_ए --

कपड़ों की शॉप है ब्रा टंगी है कुर्तियां है ।

एक लड़का साइड में देख रहा है ।

शीशे हैं शीशे में एक लड़की दिखाई दे रही है फोटो खींचती हुई --

अ स्टार्ट बैंक ए_ टी_ एम् है ।

और काफी बड़ी लाइन जेंट्स की लगी हुई है जीने पे जेंट्स उतर रहा है ।

दो लड़के सामने खड़े हैं एक लेडीज है एक जैकेट है ।

सामने एक घर है काफी बड़ा और घास है--

पेड़ है एक जेंट्स सामने खड़ा है मजली की एक तार है ।

एक बड़ा सा टेबल है टेबल पर ट्रे है ट्रे में--

ए_टी_एम है सीढ़ियां दिख रही हैं एक पिंक कलर की शर्ट में जेंट्स चल रहा है एक के हाथ में थैला है ।

शीशे का कुछ घर सा बना हुआ है पेड़ हैं कुछ पोर्ट्स हैं पोर्ट्स में प्लांट --

कलर लग रहा है उनका पेड़ है और पीछे ईंटों का घर बना हुआ है ।

लाइब्रेरी ट्यूशन है ट्यूशन में लड़की लड़के चेयर पे बैठे हुए हैं और बर्फ है ।

एक बोर्ड लग रहा है रेड कलर का सामने दो खिड़कियां हैं जिस पर लिखा है सत्यम--

एक बैनर लिख लग रहा है जिस पर लिखा है डॉक्टर मनुराज--

और लाइट है टेबल है गैंस है बिजली का बोर्ड है चार्जर है ।

प्लास्टिक के डब्बे हैं कटोरियां हैं जिसमें हरी चटनी लाल चटनी अननी के पतासे हैं टैडी बेयर है ।

अह खाने से बने हुए हैं और मिक्सी है केतली है।

अ कुछ मंडप सा है अ--

गंगा जी में कुछ बहुत सारी भीड़ है ।

गंगा जी में पूजा पाठ चल रही है लेडीज जेंट्स बच्चे हैं और एक बड़ा सा पेड़ है ।